होता है कि यह कोई फोटोकॉपी या इलेक्ट्रिशियन की--

अपनी मनोकामना व्यक्त करने की कोशिश कर रहा--

क्रोकरी की दुकान जैसा प्रतीत और मेहसूस--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

कि यह किसी फैक्ट्री या फिर--

लोग यहां पर अपना शरीर सुंदर दिखाने आते होंगे।

तस्वीर में मानो ऐसा दिख--

यहां पर लोग खाना खाने आते होंगे शायद।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

यह तस्वीर बहोत ही सुंदर प्रतीत होती है।

इस तस्वीर में किसी कलर की पुट्टी की और--

यह घर बनने के बाद सुंदर--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

यह तस्वीर बहुत ही बढ़िया लग रही है।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

इस तस्वीर में बढ़िया सा फर्निचर दिख रहा है।